बहुत अच्छी बेड दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे बहुत सारे खिलौने नजर--

चित्र में मुझे --

चित्र में मुझे एक आइसक्रीम पार्लर --

खेत दिखाई दे रहा--

इस चित्र में मुझे एक कार दिखाई दे रही --

गार्डन दिखाई दे रहा --

पेड़ दिखाई दे रहे --

चित्र में मुझे एक --

एटीएम दिखाई दे रहा --

चित्र में मुझे मार्केट दिखाई दे रहा--

चटान के पत्थर दिखाई दे रहे--

इस चित्र में मुझे बहुत--

और लोग खड़े हैं।

एचडीएफसी बैंक दिखाई दे रहा--

सारी गाड़ी दिखाई दे रही--